यहां पे एक विद्युत शक्ति उप केंद्र दिखाया गया है जो कि एक पुरानी बिल्डिंग है।

लगा हुआ है और उसके ऊपर एक करकट छावा गया है।

और स्टील की रेलिंग लगाई गई है।

यहां पे एक शोरूम दिखाया गया है।

जहां पे बहोत सारे पेड़ दिखाई गए है।

और एक आदमी ने उसे हाथ से पकड़ा हुआ है।

और उसके आगे एक लोहे का चैनल गेट भी लगा है।